अब पूरे में गार्डन एरिया है आस - पास में भी बाउंड्रीज है पुरे में पेड़ लगे हुए है।

खिड़की है आस-पास सारी खिड़कियों पे के-काँच की खिड़कियों के नीचे येलो लाइट --

बीच में दो ब्लैक कलर की डक्स बैठी हुई है।

दीवाल के ऊपर भी पिंक और रेड चेक्स बने हुए है ऊपर एक रेड कलर की लाइन --

पेड़ के ऊपर लाइट्स लगी हुई है उस ल लाइट्स से उसकी लड़की के ऊपर मुँह पे--

पारस मंदिर का कुछ स्टैचू बना हुआ है इस साइड में पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ एक आदमी वाइट स कवर वाइट सेफ्टी कवर पहने खड़ा हुआ है उसके पास एक लड़की--

पिंक कलर की पट्टी है से डिज़ाइन किया है इसको बोर्ड के आस-पास बॉउंड्री में पेड़ है पेड़ लगाएगे ।

हरी-भरी घास लगी हुई है ऊपर से धूप का अक्श दीवाल के ऊपर पड़ रहा है।

ओवल शेप में तीन चार खिड़कियाँ लगी हुईं हैं और बीच में भी जो बॉक्सेस में खिड़कियाँ बनी हुईं हैं सामने

लाइन्स ड्रॉ है और उसके सामने बहोत सारी पोस्टर्स लगे हुए उसके ऊपर--

से डेकोरेट किया गया फ्लावर में ऊपर लेड हर्ट के से येलो हर्ट वाली कैंडिल्स लगी हुई है।